किराने के शॉप नज़र आ रही है जहाँ पर साबुन जहाँ पर रेको के अंदर साबुन रखे हुए हैं।

गलियारा नजर आ रहा है जिसकी दीवारें हरे और हल्के क्रीम कलर से पेंट की गई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो फोन पे बात कर रहा है।

ऑफिस नजर आ रहा है जिसमे कैबिन है रिसेप्शन है और बाहर बैठने की चेयर और है।

एक दुकान की शटर खुली है जिसका नाम श्री लाल फार्मेसी है।

उसी के बाहर एक बाइक डिलेवरी की बाइक खड़ी हुई है वहाँ एक डस्टबिन रखा हुआ है।

कुर्सियाँ है वो काले कलर की है टेबल रखी है ऊपर सफ़ेद कलर की चादर बिछी हुई है ।

एक दुकान का नाम सिटी सिटी स्टिक कॉस्मेटिक की शॉप है जिसमें शटर गिरा हुआ बंद है।

वहाँ जो लोग खड़े हुए है उसमे से एक ने चेक्स की शर्ट पहनी हुई है ।

गली नज़र आ रही है जिसके अन जिसमे हमें घर नज़र आ रहा है ।

नदी दिखाई दे रही है जिसके अंदर नाव है नाव के अंदर बहुत बहुत सारे लोग सवार हैं।